फोटो के अंदर हम लोग के कपड़ा का दुकान देख पा रहे हैं पर हम लोग बहुत तरह के--

बड़ा सा बिल्डिंग देख पा रहे हैं उसका ऊपर हम लोग बहोत सारे व्यक्तियों को देख पा रहे हैं उसका ऊपर हम लोग ए --

ब्लैक है यहां पर एंटस में एक दो गेट देख पा रहे हैं जो कांच से बना हुआ है।

इस फोटो के अंदर हम लोग पार्क देख पा रहे हैं यहां बहुत बैठने का जगह देख पा रहे हैं इसमें से किसी का रंग ग्रीन है किसी का ब्लू किसी का ऑरेंज --

ब्लैक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहना हुआ --

पिंक कलर का है यह इसका स्किन के सामने में एक व्यक्ति सैंडो गंजी ब्लैक कलर का पैंट पहना है उसके पीछे हमलोग एक गाड़ी जो सफेद कलर का है हम लोग घर के एक अंदर स्कूटी देख पा रहे हैं।

पार्क जैसा कुछ देख पा रहे हैं बहोत सारे पौधे शेप में कटे हुए हैं।

एक हम खंबा देख पा रहे हैं जिसमें एक लाइट लगा सोलर लाइट लगा हुआ साइड में हमें कु--

ऊपर से ढका हुआ एक चेयर देख पा रहे हैं जो कि यहां पर ब्लैक कलर का एक गेट देख पा रहे हैं जो कि ब्लू कलर का एक साइकिल देख पा रहे हैं एक स्कूटी देख पा रहे हैं एक बाइक देख पा रहे हैं।

साइड में बहुत सारे टब लगा हुआ बहुत सारे पौधे और फूल काछ लगा एक टी_वी देख पा रहे हैं एक फैन देख पा रहे हैं ए_सी देख पा रहे हैं।

गुलाबी रंग का बैनर देख पा रहे हैं जिसमें से तेरे मेरे का कुरकुरे का फोटो बना हुआ है बिंगो कंपनी का--

तो किसी का कलर मेरून है ब्राउन ह--

यहां पर कुछ हम लोग कुछ ट्राईसाइकिल भी देख पा रहे हैं।

स्पाइट का बोतल देख पा रहे हैं जो हरा कलर का यहां पर एक बैक देख पा रहे हैं जो --

खाता देख पा रहे हैं उसका डेस्क में एक हम लोग कप देख पा रहे हैं जो चाय --

एक कपड़ा देख पा रहे हैं एक चेयर देख पा रहे जो कि सफेद कलर प्लास्टिक है उसका पीछे में--

किसी ने रेड कलर का सारी पहना किसी ने ग्रीन कलर का सारी पहना हुआ --

बैनर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का बैनर है ऊपर मै डिस्क दिखाई दे रहा --

इसके नीचे आकाश लिखा हुआ है बस एक सी दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का--

इस फोटो के अंदर हमें रोड दिखाई दे रहा है सामने में एक डिवाइडर दिखाई दे रहा है.

इस फोटो का अंदर लोग रूम का फोटो देख पा रहे जिसके दीवाल का रंग ग्रीन देख पा रहे इसका ऊपर एक हम लोग बैनर देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ एडवरटाइजिंग और--

यहां पर हम लोग एक हेलमेट देख पा रहे है जो कि ब्लैक कलर का है एक हम लोग--

ने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ है ब्लू कलर का पेंट पहना हुआ है पीला कलर का--

पीछे में ब्लू कलर का हम लोग बैनर देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है नो व्हाट यू डू डू व्हाट यू नो --

ऊपर लाल कलर में लिखा हुआ है इंडियन टेरर या सामने में--